ये इमेज डांस की है इसमें गर्ल्स लोग डांस कर रहीं हैं नीचे हरी मैटें बिछी हुई है काफी अच्छे तरह से स्टेज को सजाया गया है ये प्रोग्राम चल रहा है।

इसके ये बगल में बॉक्स रखा है जिसमें जनरेटर वगैरा है जब लाइट नहीं रहती जब चालू किया जाता है इसके इसके द्वारा सिगनल दी --